ब्लॉक घंटा भी टंगा हुआ है और पीछे की तरफ कुछ मूर्ति अभी बनी हुई है।

ये व्हाइट कलर की पुट्टी हुई है और यहां पे कुछ--

ऊपर की तरफ से भी लगी हुई है और एक ए_सी भी लगी हुई है।

ये इसका डिजाइन दो तरफ निकला हुआ है और यहां पर एक गमला भी रखा हुआ है।

एक पेड़ लगा हुआ है।

का विकेट रखा हुआ है।

कुछ और कि यहां पर कुछ प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं।

वो एक स्टेज लगी हुई है जोकि देखने में काफी खूबसूरत लग लग रही है।

एक लड़का गलत योगा कर रहा है।

कलर से छोटी छोटी बीटों से हुई है और यहां पर कुछ--

एक गाटर लगा हुआ है।

एक मकान भी बना हुआ है।

यहां पर कुछ स्टील की किसी की ग्रिलें भी लगी हुई है और--

अच्छे अच्छे तरह के मकान बने हुए--

यहां पर जिस ट्रैक्टर पर इसर लिखा हुआ है।

दो बछड़े भी है जो आपस में दोनों मिले हुए हैं।

उनके गले में कुछ मालाएं भी डली हुई--